और ये एस_बी_आई का बैंक नजर आ रहा है और इसमें टाइल्स लगे हुए हैं फर्स--

यह बैनर दो कलर में है जो की ब्लू और येलो है।

यह तस्वीर एक चर्च की है.

जहां पे पोप और कुछ इंसान जो की क्रिश्चियन है.

और यह एक फंवारा है जो की देखने में बहुत सुंदर लग रहा है.

ये किसी शादी की के फंक्शन की तस्वीर लग रही --

सामने एक बिल्डिंग दिख रा है.

जोकि बोहोत अ स्वदेशी थीम पर बना हुआ हे.

बोहोत ही सुन्दर दृश्य हे एक औरत--

यहाँ पे दो बाईक वाले नजर आ रहे हैं.

यह फूल भी बहोत अच्छा नजर आ रहा है और कारपेट भी बहोत सुंदर नजर आ रहा --

यह तस्वीर सरला बिरला पब्लिक स्कुल की हे.

और यहां पर एक आदमी कलर भरते हुए नजर आ रहा है और सारे लोग देख रहे हैं।

यहां बहुत तरह के लोग नजर आ रहे हैं बहुत विक्रेता भी नजर आ रहे हैं।

और गेट भी बंद है जो की गेट हरा कलर का है और मेइन गेट बंद होके ये गेट खुला--

नीचे बहोत बाइक लगा हुआ है और कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैं।

और हरियाली और बहोत बेहद मनोरम दृश्य है।

यह तस्वीर किसीको पुरस्कृत करने की तस्वीर हे.

यह किसी कार्यालय का तस्वीर हे जहाँ पर बेंच पे दो आदमी अलग अलग बैठे हुए हे एक आदमी मास्क लगाया हुआ हे.

इधर बहुत सारे खिड़की व दरवाजे भी हैं।

और इस दुकान का नाम है हेल्थ प्लस.

यह तस्वीर एक देव इस तस्वीर में एक दीवाल दिख रहा है.

बहोत तरह के पेड़ और उसमें रंग-बिरंगे फूल नजर आ रहे हैं.

यह तस्वीर एक गेट की है जिसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है या कोई नवनिर्मित गेट है.